जिसके बगल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है यह बोधगया का दृश्य लग रहा है।

ताकि क्रिकेटरों को इस पर खेलने में आसानी हो।

यह एक काले रंग का केक है जिसके ऊपर बर्गर की डिजाइनिंग की गई है।

काफी हडी -बड़ी पेड़-पौधे हैं।

जहाँ पे सामने की ओर दो हरे-हरे पर्दे हैं जिसपे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है |

जहां पर चॉकलेट कुरकुरे रखे हुए हैं|

छिक मंडल वैशाली इसके सामने दो गाड़ियां लगी हुई है।

फोटो खिंचवा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं।

के आस-पास काफी हरियाली है और काफी शुद्ध वातावरण है।

जहां पे ढेर सारी संगणक है।

और उसके सामने कुछ दुकानें हैं एक चाय की टफली है।

और हमारे भारत देश का तिरंगा शान पूर्वक यहां पे लेहरा रहा है।

जिसका नाम स्कूल ऑफ़ बायोलॉजी रखा गया है।

जिसका नाम कूल सुट्टा बार है।

कुछ जग है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं ।

एक दुकान का नाम जय बजरंगबली सीमेंट स्टोर है।

यहां पर ढेर सारी गाड़ी लगी हुई है|

यहाँ पे कई प्रकार के पौधे लगे हुए हैं ।

यह एक पार्क का तस्वीर है।

जो काफी आनंद से नाव में तैर कर लुप्त ले रहे है।

चिड़ियाँ घर के चारो ओर का --

इसका आसमान काफी साफ है और हरा-भरा मौसम है ।